देख सकते है पेशक करा हुआ है।

पूरा मूर्ति मूर्ति बनाया है सजाया है अच्छा से सजाया है। ।

रात को भी कर सकते हैं दिन को भी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है यहां जैसे कि --

इधर एगो जहाज दिख रहा है।

उधर तो कुछ नहीं दिख रहा समुद्र है समुद्र में पानी है पानी है पूरा दिखने मे खाली पानी ही पानी दिख रहा।